यहाँ पर सब भी प्रकार के बुक्स और स्टेशनरी से रिलेटेड सभी सामान दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बस स्टॉप का व्यू दिखाई दे रहा है।

इन चूजों को एक केज में रखा गया है।